अब मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है सामने में एक झूमर दिखाई दे रहा टेबल नजर आ रहा जिसके पास टीशू पेपर रखा हुआ है।

पानी के बोतल्स रखे हुए हैं रेड कलर के सोफे नजर आ रहे हैं एक आदमी नजर आ रहा है कैमरा नजर आ रहा है दीवाल में फोटो नजर--